मुझे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं लाइटिंग दिखाई दे रही हैं गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं हेल्मेट दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं पाइप दिख रहा है बहुत सारे मछलियां दिख रहे हैं जैकेट दिख रहे हैं बाल्टी दिख रही है

पानी का ड्रम दिख रहा है पानी के बोतल दिख रही है

यह बैंक दिखई दे रहा है दुकान दिखाई दे रहा है यहाँ कूटक बैंक दिखाई दे रहा है|

काँच दिख रहा है यहाँ ।

मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि फोटो खिचवा रहा है.